ये ड्रोज मे दिख रही हैं पीछे मुझे सफेद दीवाल नजर आ रही है और यहाँ लाल फूल नीले --]

नीला आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ कुछ नीचे पोल लगे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हैं।

ये किसी होटल का हॉल है । यहाँ पे मुझे काफी सारे रूम यहाँ पे मुझे टाइल्स नजर आ रही है ।नीचे व्हाइट कलर की दीवाल पे कलर किया गया है ।

एक बोहोत बड़ा हरा मैदान दिख रहा है पीछे एक बोहोत सारी बिल्डिंग्स मुझे दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

मुझे आसमान दिखाई दे रहा हैं कुछ सफेद काले कलर का कुछ बैंगनी और नारंगी कलर के मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।